इस रैन बसेरा में रहने के लिए आते है यह रैन बसेरा बहुत ही अच्छे है यहाँ रूम मिलता है लोग रूम में रहते --

यह एक किताब की दूकान है । यह किताब मनोज बुक स्टोर है । यहाँ बहुत सारे किताब मिलते हैं |